रंग बिरंगे पौधे फूल लगे हुए हैं।

और इसकी अभी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है जिसमें एंबुलेंस हेलीपैड की सुविधा भी दी जाएगी।

साइकिल की दुकान नजर आ रही है जिसका नाम साइ सैनिक साइकिल मार्ट है।

खेतों में उगाए जाते हैं ये दीपावली के टाइम इनका तोड़ने का टाइम होता है।

कुछ लोग बाहर रुपए निकालने व जमा कराने के लिए आए हुए हैं।

यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं।

स्टडी एरिया की फोटो है साइड में बुक्स रखी हुई हैं।

नजर आ रहा है यहां पे लोग--